इस दृश्य में एक ट्रक नजर आ रहा--

और नीचे मिट्टी का रोड है।

और इस शोरूम के बाहर बहोत सारी बाइक्स और स्कूटी भी लगी हुई हैं।

जिसके बगल में एक पेड़ लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक नदी नजर आ रहा है।

और यहां पे एंट्रेंस गेट --

जो कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का है।

वहां पे व्हाइट कलर से ऑक्सफर्ड पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है।

और तालाब के उसे साइड पेड़ पौधे पत्थर नजर आ रहे--

छोटे छोटे घर भी नजर आ रहे--

वो सफ़ेद रंग का कपड़ा से खुद को ढका हुआ है |

जिसके सामने मूर्ति लगी हुई है।

और बिल्डिंग का रंग ग्रीन कलर का है।

दृश्य में हमें एक बिल्डिंग नजर आ रहा है।

जो की क्रीम कलर का और है।

और रोड भी बनी हुई--

एक बच्चा पार हो रहा--

और उसके बगल में एक बिल्डिंग है जिसमें काम लगी हुई है।

इसके बाहर एक मैदान टाइप की है।

पेंट नहीं हुई है सिर्फ कांच की खिड़की लगी हुई है।

इस दृश्य में एक दुकान दिखाई दे रही--

और साइड में एक आदमीन का फोटो भी बना हुआ है।

जो कि सफेद और काला रंग का टी_शर्ट पहना हुआ है।

पार करने के लिए और यहां लोग ट्रेन के और जाते हुए नजर आ रहे--

और उ उस साइड कुछ लोग बैठे हुए--

यहां बहोत सारी सब्जी भी नजर आ रही है।

यह चित्र श्री लेदर्स का है।

और कुछ लोग भी नजर आ रहे--

सीलिंग के ऊपर लाइट लगी हुई है।

और यहां का ओनर बैठकर कुछ काम कर रहा है।

यहां एक ट्रक अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है।

टेंट के पीछे घर है और बहुत सारे पेड़ पौधे भी है ।

कुछ लोग इधर घुस पानी के अंदर डले हुए हैं।

इस दृश्य में एक तस्वीर नजर आ रही --

एक बिल्डिंग नजर आ रहा है।

और कुछ प्रसाद चढ़ा रहा है।

यहां ड्रोन उड़ता हुआ नजर आ रहा है।

और उसके बाहर एंबुलेंस लगा हुआ है।

जिस क रूम की एक दीवाल ग्रीन और दो ग्रीन दीवाल सफेद रंग की --